ये इंडिया पोस्ट ऑफिस शायद हमें दिखाई दे रियो है यहाँ पे रवि का पापा मेरा काका यहाँ पे काम करता है।

और ये बहुत ही अच्छी है जिसमे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पैसे या फिर और कुछ ट्रान्सफर कर सकते है।

देखो भाई जीअड़ा दो आदमी लागरे है जो की धागा की मील में ला रहे है एक तो छोटो सो बच्चो है जो की अंडर फोर्टीन है।

इसमें बहुत सारी बुक है और इस दुकान का नाम रवि स्टोर है इसमें --